हम देख सकते हैं एक जूस ठेला है।

देखने से लग रहा हैं एक चर्च है।

जिसमें बहोत सारे दुआ करने आए हैं।

जिसमें फूलों से सजाए हुए हैं।

देखने में बहोत सुंदर नजर आ रहा है।

देखने से लग रहा है एक पार्क है जो कि पूरा खाली है जो कि बहुत खाली है।

जैसे हो गया बहोत सारे पेड़ पौधे--

फूल है पीला कलर का लाल कलर का फूल है दो बर्तन है।

एक इंसान दिख रहे--